इस चित्र में हम देख सकते है कि एक अंकल ने सेल्फी --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

यहां पर कई सारे डब्बे रखे हुए है।